कुछ लोग है जो की यहाँ पे काम भी कर रहे है पीछे हम देख सकते है कुछ लोग खड़े भी है बिजली के हमें यहाँ पे बड़े-बड़े खम्बे भी दिखाई दे रहे है कुछ हमें बड़े-बड़े पेड़े देखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।